यहाँ पर एक वेडिंग फंक्शन लग रहा है यहाँ पे एक दूल्हा तथा दुल्हन है जो फोटो शूट करवा रहे है दुल्हन ने अपने हाथों से अपने चुनरी को थोड़ा ऊपर कर के स्टाइल्स फोटो खिंचवा रही है।

सैलून को बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है इसमें रंग-बिरंगी गुब्बारे लगाए गए हैं और बहुत ही बड़े-बड़े कांच है।

ये पोस्टर आपको दिख रहा है ये स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार बाइस का पोस्टर है।

क्या आप यहाँ पे देख रहे हैकि यह सार्थक फाउंडेशन से आए हुए हैजो फ्री चाइल्ड एजुकेशन देते है यहाँ पे।